अ ब्लैक कलर में एण्ड स्काई ब्लू कलर का जींस है। ब्लैक कलर के शूज हैं।

एण्ड ग्रीन कार्पेट बिछा ह --

ये ग्राउंड दिख रहा है जिसमें ग्रीन कलर की घास लगी हुई है।

मंच है। जहाँ पे प्ले वगैरा होता है।

सामने वाल का कलर ब्लैक --

उसकी सेल होती है जो ब्लैक कलर में दिख रही है एण्ड उसकी जो सेल होती है वह बहुत हार्ड होती है।

एण्ड कछुआ कहीं ब्लैक कलर का कहीं पिंक कलर का दिखाई दे रहा है एण्ड कछुआ बोहोत धीरे चलता है।

ये एक बैंक है।

यहाँ पे एक डी.म.डब्लू खड़ा हुआ है जिसके सीट का कलर वाइट एंड रेड है एंड वो पॉलीथिन से पैक्ड है पूरा।

एंड सामने वाइट कलर की पोलेथिन लगी हुई --

यह मेले में लोग आए हुए है। मेला लगा हुआ है क्योंकि झूले से दिखाई दे रहा है बड़ा वाला झूला लगा हुआ है।

इसमें काफी सारे कलर्स हैं एण्ड लाईटें भी व्हाइट रेड कलर में दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है और ऊपर एक मैश व्हाइट कलर में वायर --

नीचे भी घाँस लगी हूई है हरी-हरी।

जो पिंक और रेड कलर में है।

उम्म नीचे शेड डला हुआ है।

डला है सारी --

एण्ड बा बॉर्डर भी येलो कलर में --